देखिए दोस्तो यहाँ पे एक मन-- मकान बना हुआ है मंदिर मे बिल्डिंग है मिट्टी कलर की और कांच की खिड़कियां लगी हुई है बीच मे दरवाजा लगा हुआ है।

देख सकते है दोस्तो यहां पे एक चर्च बना हुआ है और बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है।

सामने एक गेट लगा हुआ है दो खंभे लगे हुए है खंभे से तार निकली हुई है बाहर जाली लगी हुई है नीचे ग्राउंड दिख रहा है ग्राउंड मे मिट्टी दिख रही है बाजू मे पौधे दिख रहें हैं।

और इस पिक्चर मे एक भाईसाब है जो एक कार है।

होर्न बीच मे बडा स गेट लग हुआ है सामने दान पेटी लिखा हुआ है ब्लेक मे बडे पौधे दिखयी दे रहे है छोटे पौधे दिखयी दे रहे है संदार जबरदस्त

देख सकते हैं दोस्तों सामने एक बिलिडिंग हैं बिल्डिंग के बाहर गेट हैं गेट के बाहर अंगरक्षक हैं देख सकते हैं सामने गेट हैं ऊपर खुला आसमान हैं।